इस तस्वीर मे मुझे रेलवे ट्रक दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बेड दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

वहां मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे दो डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे दो बाइक दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक स्कूटी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक क्लास दिखाई दे रही हैं।